मकान के बगल में एक वृक्ष लगा हुआ है जो हरा भरा है और उस पर कुछ पुष्प लगे हैं।

और विद्यालय के भवन के सामने सीढ़ीयों पर स्कूल की कुछ मैडम लोग खड़ी हुई है जो अपने पिक्चर को--

अपने हाथों में हथौड़े और छेनी लिए हुए हैं और सर पर एक येलो कलर का कैप पहने हुए हैं --

संजीवनी किरण कोचिंग सी बी एस ई बिहार बोर्ड पांच से सात क्लास तक--

देखने से कोई कार्यस्थल दिखाई दे रहा है या फिर कोई ऑफिस का नजारा है।

यहां पर लाइट लगे हुए हैं सीलिंग में जो येलो कलर के हैं ब्लू कलर के हैं।

रेड कलर का टी-शर्ट पेहने हुए हैं ब्लू कलर का टी-शर्ट पेहने हुए और एक ब्लू कलर का पैंट भी पेहने हुए हैं।

जो लेडीज के इस्तेमाल के लिए रखा हुआ है दूसरी तरफ शहनाज हुसैन लिखा हुआ --